और अ बेहतरीन जगह है जो भी है।

श्री लाल सेवा समिति है कोई ये कॉलेज ही है।

और ग्रीन-ग्रीन सारा चीज दि दिख रहा है यहाँ पे।

और काफी बड़ा है।

और हमको लगता है कोई मारुती की --

आई थिंक हीरो का ही एजेंसी टाइप का कुछ लग रहा है।

कुछ काम अभी भी चल रहे है। वगेरा लगे हुए हैं।

शंकर भगवान का मंदिर है।

किसी पाइप की सेटिंग कर रहें है।

ये देखिये किसी ठेले पे --

पोखरा कह लीजिये उसके साइड साइड में --

और बढ़ियां गाय लग रही है ब्लैक कलर की है।

ये चित्र है लग रहा है किसी अ --

ये किसी प्राइमरी विद्यालय का लग रहा है। एक अ --

बीस में गोलंबर बना हुआ है मतलब वाटर का फव्वारा लगा हुआ है।

ये उसी का सीन इसमें दिख रहा है।

कुछ बच्चे हैं जो स्नान कर रहे हैं पोखरे में।

पोखरे में बहुत सुन्दर लग रहा है।

दोस्तों ये देखिये ढलैया का काम चल रहा है यहाँ पे और --

सारे लेबर हैं और किसी मकान की छत को --

ये किसी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी का --

ये ई-रिक्शा का शोरूम है।

और हमको लगता है कि ये पहला दिन है की इस बुक स्टाल --

ये किसी बैंक का सीन है जिसमे --

लेडिस दिख्र रहे हैं जैंट्स भी दिख रहे हैं और इतनी भील है जैसे लग रहा है --

एजुकेशन के रिलेटेड है या --

बहुत सारी बुक्स वगेरा यहाँ फ्री मिलती है और खुद भी लेके जा सकते हैं।

अंग्रेजो के ज़माने का बना हुआ राजा महाराजाओ के जमाने --

और योगा अपनी लाइफ में करना चाहिए। बहुत अच्छी चीज है योगा --

और इसके सामने कार वगेरा खड़ी हैं और अच्छा बैंक है।